जैसे की मैं देख रही हूँ दोपहर का वक्त हैं कड़ी धुप हैं मेन रोड हैं।

इस मेन रोड के बाहर की तरफ में बहुत सारे रकम-रकम की अलग-अलग डिजाइनज़ और अलग-अलग कलर्ड की टाईल्स और मार्बल पत्थर रखी गई है जैसे के --

यहां पर मुझे दो लड़के नजर आ रहे हैं एक लड़का ने --

बहुत खूबसूरत लग रही है रात का वक्त है यहां पर बहुत --

यहाँ पर बहुत सारे सैलेड्स और बहुत सारे खाने रखे हुए हैं रकम-रकम के अन्य प्रकार के खाने हैं सैलेड्स में खीरा प्याज गाजर रखा गया है और --

एक व्यक्ति लड़का खड़ा है मेहरून शर्ट पहन के यहां पर इस दुकान में यहां पर वेट मशीन में रखी हुई है ब्लू ब्लू टोकरिया भी है ।

नोके की तरह बना हुआ बोट है जहाँ पर यहाँ पर सब घूम सकते हैं इस बोट में बैठ के अलग-अलग बोट के कलर है पीला ब्‍लू ग्रीन लाल --

और यहां पर सब घूमने के लिए आते हैं सब घूमते हैं सफर करते हैं इस पानी में--

सारे के सारे बाइक प्लास्टिक से कवर किए गए है सारे के सारे बाइक ब्लैक है लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स भी लगे उनके अलग-अलग कलर में है जैसे की रेड ग्रीन ऑरेंज ग्रे --

यहाँ बहुत खूबसूरत से लाइट की डेकोरेशन की गई हैं रोड के ऊपर में --

उनके बैगस रखे हुए हैं एक बैंच के ऊपर एक स्कूल बैग है यहाँ पर दो फोटू फ्रेम है जैसे की

कुछ स्पीच लिखा हुआ है एक इस फोटो फ्रेम में महान अब्दुल कलाम जी की फोटो है उसका कुछ स्पीच है एक --

तेल बहुत-सी चीज मिल रहे हैं जैसे की परले-जी- बिस्किट है वस उसके प्राइज भी वहां नीचे लिखा हुआ है सिक्सटी थ्री रूपीज मेगी --

कहने के लिए लिखे हुए हैं नीचे की तरफ बिस्किट्स हैं गुलाबजामुन की पैकीट रखी हुई है ।

पोस्टर लगा हुआ है उसमें खाने की पिक्चर्स बनी हुई है ।

अब इसका रेस्टोरेंट का नाम है मेघा लिखा हुआ है ऊपर --

सब समान लोहे की है स्टील की है बहुत मजबूती समान है यहाँ पर बहुत सारे डंबल्‍स रखे हुए हैं।

गुड केफे नाम है इसका और ये केफे के बाहर में एक टेबिल तीन चेयर लगाया है एक टेबिल में छाता लगाया गया है ।

सबसे ऊपर में दो रखा हैं उसके नीचे में तीन रखा हुआ हैं सब एक ही तरह --

यहाँ बहोत सारे अन्य प्रकार के लेपटॉप रखें हुए हैं ज्यादातर एच_पी और इंटेल है।

पीछे की तरफ में एक येलो कलर की बोर्ड लगी हुई है जिसमे लिखा हुआ है मैट्रो टायर्स --

जैसा कि मैं देख रही हूं सुबह का वक्त है।

यहाँ पर रंग बिरंगी अन्य प्रकार के फूल हैं जैसा की पीला गुला --

लक्ष्मी ज्वेलर्स लिखा हुआ है पूरा व्हाइट कलर का है ऊपर में और नीचे रेड कलर की है रेड कलर --

बहुत कडी धूप दिखाई दे रही है यहां पर और ये एक किशोर न्याय परिषद कटिहार में है।

यहां पर न्याय होता है सबों का जैसे कि कोर्ट होता है वैसे ही यहां पर एक बिहाड़ एक जिला में ये भी तो है --

जैसे कि मैं देख रही हूं ये एक पिंजरा है और इस पिंजरे में बहुत सारे पंछी दिखाई दे रहे हैं सारे --

सारे पंछी बहुत खूबसूरत हैं बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं सारे --

और इस तरफ से मुझे दिख रहा है कि एक स्टील का रेलिंग है रौड़ है यहाँ पर --

ये दीवार पूरा नीले रंग में है इसके पास में एक दुकान नज़र आ रहा है इस दीवा--

सुबह का वक्त है धूप है नीला आसमान है यहां पर ऑरेंज और ब्लू कलर की स्लाइडिंग है --

यिप्पी नूडल्स है मैगी है सॉस है बहुत --

जूसेस रखे हुए हैं हैंडवॉश रखे हुए हैं जैसे की हैंडवॉश में दिटौल है लाइबबॉय है संतूर है ।

सफेद कलर के कपड़े और पिंक कलर के कपड़ो से घेरा गया हैं कारपेट लगी हुई हैं।

जैसा कि मैं देख रही हूं यहां पर एक व्हाइट कलर का टेबल है।

टेबल के ऊपर मुझे एक ब्लैक कलर की ट्रे रखी हुई हैं इस ट्रे में बहु --

गाजर प्याज और खीर का गाजर को फूल के डिजाइन में कटिंग --